यह जगह जो देख रहे हैं इस जगह का नाम है प्रिंस पेले--

पैलेस नाम से यह एक होटल --

यह एक जगह का दृश्य जो अपन देख रहे हैं आह यह बना हुआ है पाथवे बना हुआ है इस पर चलकर अपन जाते हैं सामने कुछ--

आई गेस कि कोई गार्डन न या कोई जो स्मारक वगैरह जो जगह होती है।

हम लोग जब मार्केट साइड जाते हैं अपने--

और यह इसी के ऑथराइज डीलर है यह--

यह जगह है चर्च के बाहर की जो आह।

उनके उनका ये बाहर का दृश्य है चर्च कहते हैं।

यह दृश्य हमें दिखाई दे रहा है रेलवे स्टेशन जो होते हैं।

और कि कोई प्रोडक्ट तैयार होता है शायद यहां पर।

हम देख रहे हैं स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल --

और काफी बड़ा है देखिए स्कूल बहोत ही अच्छा--

प्लेग्राउंड भी देखिए बच्चों का कितना काफी बड़ा मैदान है जहां पर बच्चे दौड़ और बास्केट बॉल --

यह जो दृश्य है यह एक रेस्टोरेंट जो होते हैं वहां के बाहर का दृश्य कांता--

और काफी हरी भरी सब्जियां हैं।

यह दृश्य एक सैलून का लग रहा है जैसे सैलून होता है जो--

एक पुरानी सी मिल जिसे कहते है फैक्ट्री जिसे मिल कहते है अह वो वहां पर--

इसमें किसी ना किसी चीज का उत्पादन होता है जैसे कि बड़ी सी फैक्ट्रियां होती थी।

और जब भी मन होता है बाहर खाने का तो लोग जाते हैं।

और बहोत ही अ आजकल देखने को नहीं मिलती है पुरानी इमारते--

चित्र में दिखाइ दे रहा हैं साफ लिखा है फेडरल बैंक हैं ये।

इस तरफ सड़क है और लोग जाना आना कर रहे हैं।

कही पर भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो उसमें इसका यूज होता हैं।

कहीं पर भी जो बिल्डिंगों में और उसमें लोहा यूज किया जाता है।

इस चित्र में एक महिला का ये लगा हुआ है पोस्टर लगा हुआ है उनके बारे में लिखा हुआ है और बह़ोत सारी भीड़ है।

लेकिन अभी भी म्यूजिक मे इसका स्थान है।

और यह शायद बेकर्स हैं वहां का है यह।

इस दृश्य में अ दिख रहा है कि--

एल_ई_डी जो जिस जगह पर हम लेते हैं।

ऐसी लग रही है जैसे परचेस करते हैं जहां पर कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह।

और बड़ी सी एक कार खड़ी हुई है बाहर।

अ कोई जो बिन अ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो विंडो लगती है।

टाइल्स और मा आह जो डिज़ाइन बहुत सारे हैं इसके।